राइट हैंड साइड में उसके जो है एक ताला भी नजर आ रहा है जो की ब्लू कलर का है।

और हम देख सकते हैं ऊपर एक फ्रेम भी है जो कि बहुत ही सुंदर है।

जोकि कनक ऑटोमोबाइल्स का है जैसे कि हम बोर्ड में पढ़ सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है बॉ--

जिसके दाईने और और बाइने और जो है घास है जो की बहोत ही छोटे छोटे हैं।

चार से पांच यात्री जो है वो जा रहे हैं अंदर की तरफ शायद ये बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन का दृश्य है।

एंड राइट हैंड साइड में जो है एक बाइक पर--

यहां नीचे हम देख सकते है सरिया जो है वो लगा रखा है और लोग जो है उस पर ही काम कर रहे हैं।

और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में टू व्हीलर्स भी खड़े है।

क्लास भी है जो सबसे पहला टेबल है हमारी तरफ वो देख सकते हैं आप वहां पे--